डिक्शनरी की शॉप है ये।

जिसपे एक लड़का बैठा है हाथ में मोबाइल रखे है बुक्स दिख रही है पेंस दिख रही है किताबें दिख रही है।

गोल्डन कलर की मूर्ति है बहोत से लोग बैठे है टेंट लगा है बैनर लगा है कुछ सम्मेलन चल रहा है कुछ लोग पूजन कर रहे है।

यहाँ बहुत सी भीड़ इकठी है असमान दिख रहा है दीवार दिख रहे है पेड़-पौधे दिख रहे है।

दुकान-दुकान लगी है। आपस में कुछ लोग बातचीत कर रहे है कुछ लोग फोटो भी खीच रहे है। साइकिल दिख रही है।

नीचे चटाई बिछी है स्लीपर दिख रहे है असमान दिख रहा है पेड़ पौधे दिख रहे है झंडे लगे है।

एक शटर लगी है लाइटस सी दिख रही है ए.सी. दिख रही है धुम्राकाम करना मना है एक नोटिस भी लगा है।

एक रेलवे स्टेशन है जिस पर तिन चार लोग खड़े है जो समोसे ले रहे है एक टंकी दिख रही है।

एक क्लासरूम है जिसमे एक टीचर खड़ी हैं कुछ बच्चे भी खड़े है खिड़कियाँ भी दिख रही है गमला दिख रहा है गेट दिख रहा है।

पेजेज दिख रहे है बूक्सेस रखी है फेविकोल रखी है स्सिस्सर रखा है कंपास रखा है पेजेज दिख रहे है।

एक सब्जी की दुकान है जिस पर एक लड़का खड़ा है जो सब्जी को बेच रहा है एक लड़का है जो मोबाइल को देख रहा है चेयर दिख रही है फ्रूट्स दिख रहे है केले देख रहे है पत्ता कोबी दिख रही है।

एसी दिख राही है खिड़कियाँ दिख रही है गेट दिख रहा है शटर दिख रही है मोटरसाइकिल खड़ी है साइकिल खड़ी है।

अकाउंट्स की बुक रखी है। एक लड़का खड़ा है। वाइट कलर की टीशर्ट पहने ब्लैक कलर का पैन्ट पहने है। स्टूल रखा है चेयर रखी है।

यहाँ डास चल रहा है कुछ लड़कियाँ देख रहा है कुछ लड़का-लड़की डास कर रही है डी_जे दिख रहा है आस --

एक अं- हॉस्पिटल है जिसके पास तीन चार लोग खड़े है मोटरसाइकिल दिख रही है एक कार का मिरर भी दिख रहा है गेट्स दिख रहे है खिड़कियाँ दिख रही है आसमान दिख रहा है पेड़ दिख रहा है।

एक मेला लगा है जिसपर झूले दिख रहे है कुछ लोग झूले पर झूल रहे है कुछ लोग शॉप पर खड़े है।